इसके नीचे बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

और बहुत सारे पत्ते भी हैं और यह एक थाली में रखी हुई है।

और यहां पर एक खंबा भी है जिस पर लिखा रहा है के_डब्ल्यू_एस_एच_ई_ई --

यहाँ पर एक बैठने की सीट है।

यहां पर ऊपर से पानी आ रहा है।

यहां पर बहुत से जेंट्स और बहुत सी लेडीज़ भी है जो योगा कर रही है।

और यहां पर बहुत सारे तार है और पीछे पेड़ भी लगे हुए हैं।

इसमें से एक ने व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहने हुए है।

जा रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर कि पैंट पहनी हुई है।

दो बंदे इसके पीछे बाइक पर है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है दोनों ने और ब्लैक कलर की पैंट पहनी--

यहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

इन्होंने शर्ट और पैंट पहने हुए हैं और एक आदमी--

एक एशियन पेंट है और एक अशोकस है जिसने भूषण लाल मनोज कुमार गांधी चौक शामली में है।

इसने ब्लैक शर्ट और ब्लू पैंट पहनी हुई है।

और का काम हो रहा है।

राइट साइड में भी तीन कुर्सियां रखी गई हैं और मेज है।

सामने एक फैक्ट्री है कुछ--

कुछ भी बन सकता है और यहां पर हाईवे है हाईवे पर एक ट्रक आ रहा है।

यहां सामने बहुत सारे स्टूडेंट है जो मार्शल आर्ट्स हैं।

येलो कलर का बंधा हुआ है और यहां पर ये मार्शल आर्ट सीख रहे हैं।

यह एक रूम है जिसमें एक बेड बिछा हुआ है।

यह स्टील की कुछ चीजें रखी हुई है।

एक आदमी ने पिंक कलर की शर्ट ब्लैक कलर की पेंट पेहनी हुई है।

यहां पर दो आदमी खड़े हुए हैं।

और एक आदमी व्हाइट शर्ट पहने हुए बैठा हुआ है और तीन पंखे लगे हैं।

वो है और एक सामने कुछ मेडिसिन अगैरा वगैरा--

यह एक पैलेस है जिसमें एक अ एक बच्चा घूम रहा है जिसने ब्लू कलर का टी-शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर एक झाड़ी भी है फुलवाडी जिसे फुलवारी कहते हैं और वहां पर बहुत सारी लाइटे लगी है।

और यहां पर सामने एक मीटर लगा हुआ है जो मशीन को चालू और बंद करने का कार्य कर--

यह एक इमारत है और इसके पीछे एक टावर खड़ा हुआ है जिसमें लाइट चल रही है।

जोकि वाइट कलर में है और यह गेट ब्लैक कलर में।

और लेफ्ट साइड में एक ग्रिल है और ब्लू कलर की विंडो है।

यहां पर तीन बच्चे योगासन कर रही हैं जिसने एक पिंक कलर की चटाई बिछाई हुई है एक--